हम सामने सुंदर पहाड़ देख सकते हैं।

दूर हमें देवधार के पेड़ नजर आ रहे हैं।

मशीन फोटो प्रिंट करती है।

चार लोग मूर्ति को सजा--

दुकान में बच्चों का ढेर सारा सामान है।

यहां पर सुंदर कुर्सियां हैं।

जिनका कलर ग्रीन एवं मेरून नजर आ रहा है।

यहां पर एक ब्लैक चेयर भी है और सामने बोर्ड पर--